देवताओं की मूर्तियां लगी हुई है।

वहां पर एक बच्चा एक स्टूल पर बैठा है।

यहां पर एक व्यक्ति सफेद कलर की टी शर्ट पहने खड़ा है।

यह एक बहोत सारी इमारत की जगह है।

यहां पर बहुत सारी लंबी गली बनी हुई है।

जहां पर पेट्रोल और डीजल मिलता है।

तीनों का मैंट संतरी और गुलाबी रंग का है।

यहां पर किसी मंत्री के आने का आयोजन किया गया है।

और यहां पर बहुत सारे लोग भी खड़े है जो फोटो खिचवा रहे है।

वहां पर एक महिला दो गायों और भैंसों को ले जा रही है।

जहां पर एक बहुत बड़ा शीशा लगा हुआ है।

जो कि साइंस में काम आते हैं।

जो नीले रंग की है।

जिसमें की केले लगते हैं।

और बाहर की ओर एक सड़क है।

यहां पर ए चाऊमीन की फोटो लगी है।

सामने की ओर आसमान बहुत अच्छा है।

और ये पानी के अंदर पास पास में खड़े हुए हैं।

इन सीढ़ियों से एक व्यक्ति पीले रंग की टी शर्ट पहन कर ऊपर की ओर जा रहा है।